यह एक रास्ता है और इस रास्ते में कुछ आदमी दिख रहे हैं।

और कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं और एक बस भी खड़े हैं।

यह एक होटल है और इस होटल में कुछ लाइट जल रही है।

और एक खंभा भी दिख रहा है और पास में एक लकड़ी का सोफा भी दिख रहा है।

और कुछ मैडम है और ऊपर पंखे लगे हुए है।

और जो कि वर्क कर रहे हैं और इनके हाथ में लैपटॉप भी है।

और पीछे दीवार पर हल्का व्हाइट और काला पेंट भी दिख रहा है।

और नीचे जमीन पर कुछ पत्ते भी दिख रहे हैं।

यह एक रास्ता है और इस रास्ते के आसपास कुछ आदमी भी खड़े हैं।

कुछ औरत भी है और कुछ लाइटें भी जल रही है और एक सोफा भी धरा हुआ है।

और इस डांसिंग रूम में दो ब्लैक पर्दे दिख रहे हैं और एक ब्लू लाइट दिख रही है।

जो कि पेले कलर की है और पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ऊपर ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है।

और इस पार्किंग में कुछ गाड़ियां दिख रही--

और आमने सामने बराबर में पेड़ पौधे भी खड़े हैं।

यह एक केपा है और इस कैफे में कुछ लाइटें दिख रही हैं।

और कुछ लाइटें भी जली हुई है।

और एक आदमी सड़क पर झाड़ू मार रहा है।

और कुछ सामान दिखाई दे रहा है जैसे मशीन दिखाई दे रही है।

और इसके पीछे ढोलक का सेटअप भी धरा हुआ है।